इस तस्वीर मे महिलाओ के पहनने की के स्वेटर और जेकेट दिख रहे है और बहोत सारे कपड़े दिख रहे है।